किनारे बहुत सारी नाव पडी है कुछ उल्टी पढ़ी है कुछ सीधी है यहाँ कीचड़ भी है बहुत सारी।

यह फल है अंगूर है काले रंग के अंगूर है हरे अंगूर है केले है पपीते है अनार है सेब है।

ये बहोत बड़ा पार्क है। पार्क में दो लड़कियां बैठी हुई हैं एक झूले --